सामने ऊपर वॉलपेपर लगे हुए हैं सामने एक रूम है जिसमे ऊपर के लिए सीढ़ियाँ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एक टेबल रखी हुई है उसमे एक बोटल रखी हुई दिखाई --

पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक जाली दिखाई दे रही है उसके ऊपर कुछ छोटे घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। पेड़ में कुछ छोटे - छोटे फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रही है रोड मे एक कार दिखाई दे रही है सामने एक जूते की दूकान दिखाई दे रही है कुछ बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं पेड़ दिखाई दे रही हैं ।

और पिंक कलर की दिखाई दे रही है हरे कलर की दिखाई दे रही है आसमान में बदल दिखाई दे रहे हैं काल पहाड़ दिखाई दे रहा है और कुछ--

जिसमे एक रस्सी दूसरे छोर से बंधी हुई है और एक आदमी उसमे लटकता हुआ दिखाई दे रहा है।

उसमे एक डैम सा बना हुआ है और कुस-ऊपर से कुछ सीढ़ियां भी दिखाई दे रही हैं उसमे धुंवा धार पानी गिरते हुए दिखाई दे रहा है ।